कई सारे वृक्ष देखने को मिल रहे हैं।

छत में कई सारे पंखे दिख रहे हैं।

दफ्तर में लाइट जले हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस छवि में रास्ते पर कुछ लोग चलते हुए दिख रहे हैं।

कई सारे पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं।

पीछे कुछ मकान दिख रहे हैं।

छवि मे कई सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

पीछे सफेद रंग में इमारत नजर आ रही है।

कई सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं।

पीछे बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है।

इस छवि में कई सारे व्यक्ति रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं।

पेड़ पे पोस्टर बंधे हुए हैं।

छवि में कुछ बस नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग बेंच में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक पेड़ देखने को मिल रहा है।

ठेले पर फल रखे हुए हैं।

नीले रंग का छाता नजर आ रहा है।

कुछ टूरिस्ट देखने को मिल रहा है।

काले रंग का पानी का टंकी दिख रहा है।

मन्दिर के उपर झंडे लहरा रहे हैं।

एक औरत चप्पल देख रही है।

नीचे लाइट जली हुई दिख रही है।

पीछे कुछ मकान दिखाई दे रही है।

इस छवि में कई सारे व्यक्ति खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं।